और गाड़ी को ऊपर उठा रखा है और गाड़ी की टायरे भी खोल दी गई है और गाड़ी को सही कर रहे है।

गाडी की आगे की तरफ के दोनों टायरे खोल दी है और ये मैकेनिक इस गाडी की जांच करता नज़र आ रहा है काफी बड़ी अच्छी गाडी नज़र आ रही है ये।